ये एक दांत का हॉस्पिटल है जहां पर दो लोग अंदर जा रहे हैं।

यहां पे अलग अलग कलर की बुके है वहां पर एक जग रखा हुआ है।

लटकी हुई है दुकान का नाम राज बाई सिल्क पैलेस है बोर्ड पर माता जी की फोटो है बाजू में फोन की शॉप है।

यहां पर काम हो रहा है दो लोग काम कर रहे हैं दोनों के हाथ में हथौड़ी है दोनों ने रेड कलर का जैकेट पहना हुआ है।